तस्वीर में एक बाइक का नंबर वन फाइव टू फाइव लिखा गया है।

इस तस्वीर में मुझे एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में पीछे की तरफ पे पिंक कलर का फूल दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में पीछे की तरफ पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे रेड कलर का पहाड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे चार बेंच दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में चर्च का कलर ब्ल्यू और ब्राउन से किया गया है।

इस तस्वीर में चर्च के पीछे बड़ी पहाड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मकान का रंग लाल और सफेद से किया गया है।

इस तस्वीर में मुझे दो पिलो दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बड़ी बड़ी तीन पिलर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक मर्द ग्रीन कलर का शर्ट पहनकर खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी लाइट जलती हुई दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मकान के पीछे बहुत सारे पेड़ है।

इस तस्वीर में मुझे बलुघाट एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बच्चा वाइट फ्रॉक पहन कर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे ग्रीन कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे बुक्स और किताबें दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मैथमेटिकल ट्रूथ्स बुक दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक मर्द ब्लू रंग का शर्ट पहना हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे दो काले रंग के चेयर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में दीवार का कलर लाइट पिंक पर किया गया है।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दो बड़े बड़े मकाने दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में आसमान का कलर ब्लू है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ चेयर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ बंबू के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।